एक मिनी अलग अलग का बोर्ड लगा हुआ है पूरे बाहर बहोत ही बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं।

इस फोटो में बहुत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है और ये क्लब का नजारा है।

मैं स्कूल का काम करके आने के बाद--

और इस सटोर के बाहरे तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी भी दिखाई दे रही है इस फोटो में हमें पीछे ए_सी भी दिखाई दे रही है।